औ यहाँ पे अ रामदेव जी बाबा जी की मूर्ति बैठी हुई हैएक चबूतरे पे-एक चबूतरे पे--

और स्कूल के सामने थोड़ा सा ग्राउंड बना बना हुआ है जिसमें मिट्टी वगैरह है और पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे।

ब्लैक कलर की टाइल्स की सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है बगल में एक पार्किंग है जहाँ पे एक बाइक खड़ी हुई है शोरूम के अंदर लाइट जल रही है बाहर बहुत सारी बाइक खड़ी हुई है लाल है ब्लैक है।

अं यह एक साई बाबा की मूर्ति है पीले कलर की माला पहनी हुई है उन्होंने--

यहाँ पर तीन बैनर लगे हुए है जिसके ऊपर तीन मुर्तिया बैठी हुई है।